यहाँ पर एक ग्राउंड है ग्राउंड मे दो बले तिन विकेट और एक बॉल रखा हुआ है।

और दो सीमेंट का पानी वाला बना हुआ है जिसे ऊपर से हट की तरह खेरा गया है और यहाँ पे कुछ घास भी है।

ये एक पानी का ऐ है पूल है और इसमें बहुत सारे रंगीन कलर के पाइप दिया हुआ है पाइप्स के अगल बगल बहुत सारी बिल्डिंग भी है।

और उसके नीचे बहुत सारी बाइक भी लगी हुई--

यहां पर एक बहुत बड़ी सी नदी है और उसके बीचो बीच कुछ बना हुआ है ।

और एक पूल भी है और उसके अगल बगल पेड़ भी दिखाई दे रहा है और आसमान बिलकुल कलर फुल दिखाई दे रहा है।

यहा पे बहोत बड़ा सा नदी है नदी में एक घास टाइप का एरिया दिया हुआ है बीचों बीच ओर एक बास भी दिखाई दे रहा है और इसका पानी बिल्कुल ब्लैक जैसा दिख रहा है ।

जो कि उसके ऊपर घांस है और बहुत सरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक दुकान है जहां पे टू थाउजंड ट्वेंटी वन लिखा हुआ है।